लाइट भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक शॉप भी बना हुआ है पता नहीं वो कौन सा शॉप --

वहाँ पर स्विमिंग पूल भी दिखाई दे रहा है बहोत सारे लाइटें जल रहे है बहोत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है एक प्रकार की चेयर भी --